पानी का जहाज दिख रहा है व आसमान दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर एक महल नुमा घर दिख रहा है जिस पर लोहे --

में लाइट रे उनका अक्स पड़ता हुआ दिख रहा है सफ़ेद रंग की छत दिख रही है।

इस चित्र के अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है जिसके पैरों पे चोट लगी हुई हे ।

ये डमी लगी हुई है जिसने लाल रंग के कपडे पहने हुए है। दो स्टूल रखे हुए --

इस चित्र के अंदर सफ़ेद रंग की एक बड़ी-सी इमारत दिख रही है उसके ऊपर एक घड़ी लगी हुई है।

लकड़ी का बना हुआ सामान दिख रहा हे एक आदमी खड़ा हुआ हे ।

कालीन बिछा हुआ है हरे रंग की सी लाइट जलती हुई दिख रही।

ये फूल लटके हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र के अंदर ये तीन औरतें एक आदमी --

तालाब में पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं नाव चलती हुई दिख रहीं है।

ये कांच के घेरे अ में बंद है ये नीचे उसके पत्थर दिख रहे हैं।

ये लाल पर्दे लटके हुए दिख रहे हैं।